और बड़े बड़े पेड़ और पहाड़ भी नजर आ रहे हैं ।

खाली मैदान है और सामने बहुत बड़े पहाड़ हैं ।

जो की आधे-अधूरे नजर आ रहे है।

और जिसके लिए सेलिब्रेट की जा रही है उस बच्चे की उम्र एक साल है क्योंकि केक पर एक नंबर लगा हुआ --

बाहर की फोटो है जिसका नाम है एच.डी.एफ.सी. बैंक --

ये इमेज किसी के बर्थडे पार्टी के घर की बाहर की इमेज है।